बच्चे ये सारे क कलर के कपड़े पहने हुए हैं और एक रेड कलर का भी--

यल्लो कलर का टी शर्ट पहन कर के फोटो ले रहा है और उसका फ्लेश वाइट कलर का जल रहा है और यहाँ पे बहोत सी सारी मूर्तियां र--

बहोत ही सारे पेड़ पौधे भी लगायें गये है और पेड़ पौधे का कलर ब्लू--

यहाँ पे बहोत ही सारी लाइटें लगाई गई है और यहाँ एक अ--

ये दीवाल पे बहुत सारे रंग बिरंगे भूख भुक्की लाइट लगाई गई है और उसे--

ठीक है और इसमें माता का साड़ी का कोर कत्थी कलर का है और --

और सेटक बॉक्स का कलर अअ ब्लैक है और इसमें पर्दा भी लगाए गए हैं और पर्दे का कलर --

यहां पे बहोत सारे बच्चे बच्चियां खेल रहे हैं और बैठे हुए हैं और ए लड़के ए--

यहाँ वाइट कलर का ड्रेस पहनी हुई है और रेड कलर की दुपट्टा रखी हुई है।

और इसमें एक ब्लैक कलर का दरवाजा भी है और उसमें शीशा लगा हुआ हैं और यहां पे ये एक पंखा भी लगा हुआ हैं और--

यहां पे एक मंदिर है और मंदिर के ब पीछे बहुत से सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और पेड़ पौधे का कलर ब्लू है।

यहाँ पे एक कॉफी शॉप है और कॉफी शॉप में बहोत से सारे--

गाड़ी मकाने नजर आ रहा है और यहां पे हरे भरे--

सारा पानी जमा है और पानी के बीच में मंदिर--